बड़े बड़े अक्षरों में जिओ लिखा गया है।

सामने मैं एक कॉफी स्टॉल देख पा रही हूं जहां पे मैं --

बगल साइड में कुछ जाली भी रखी गई हैं दीवारों पे कुछ टंगा हुआ है।

सामने मै एक शॉप देख पा रही हूं।

सामने मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

बगल में कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

और एक पीको दिखाई दे रहा है।

बगल में मैं एक बड़ा सा फील्ड देख पा रही हूं जिस पे कुछ लोग खेल रहे हैं।

साइड में कुछ और दुकानें भी है।